निया ओढ कर बैठी हुईं हैं उसमें एक लड़की खड़ी हुईं हैं।

पेन पेपर और स्टेपलर भी पड़ा हुआ है।

और डिब्बे भी पड़े हुए हैं।

ये एक ऑफिस है ऑफिस के अंदर एक टेबल दो कुर्शिया लगी हुईं हैं।

और दीवार के ऊपर पंखा लगा हुआ है।

स्टैंड के ऊपर कितने सारे टायर पड़े हुए हैं टायर्स अलग अलग--